दो दुकानें नज़र आ रही है।

बोर्ड लगा हुआ है उस पे लिखा हुआ है और नीचे एक --

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं खुला आसमान दिखाई दे रहा है एक खंभा दिखाई दे रहा है।

पोस्टर दिखाई दे रहा है कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है सब व्हाइट व्हाइट कलर की पास में एक रोड दिखाई दे रही है सामने एक दीवार --

ते शानदार दृश्य दिखाई दे रहे है।

चित्र दिखाए हुए हैं ऊपर से तार जा रहे हैं बिजली के और ऊपर एक मकान दिखाई दे रहे हैं उसमें ब्लू कलर के गेट लगे हुए हैं एक --

बहुत ही सुंदर सा तालाब दिखाई दे रहा है खुला आसमान है आस पास पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर कुछ बच्चे बैठे हुए अपना होमवर्क अपना कार्य कर रहे हैं दीवार पर व्हाइट एंड रेड कलर किया हुआ है।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

लकड़ी के सोपे और गोल मेज बनी हुई है सोपे पर तकिये रखी हुई है छोटे-छोटे पेड़-पौधे रखे हुए है पास मे --

अलग अलग टीमें खड़ी हुई है कुछ दर्शक भी आए हुए हैं यहां पर एक टीम के येलो कलर के ड्रेस है एक टीम के पर्पल कलर के ड्रेस हैं।

दिखाई दे रहे बेड पर एक व्यक्ति सूप पिया हुआ नज़र आ रहा है और ग्लूकोस --

पंखे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लाइटे दिखाई दे रही है और दीवार पर कुछ फोटो भी --

छतरी भी सी दिखाई दे रही है कुछ पेड़ पोधै दिखाइ दे रहे हैं एक छोटा पेड़ लगा हुआ दिखा उससे ऊपर जाली की --

एक कच्ची झोंपड़ी सी बनाई हुई नज़र आ रही है उसके आगे--

दो लड़कियां है एक महिला साड़ी पहनी हुई नजर आ रही है और सामने से प्लस का निशान भी दिखाई दे रहा है।

ये कुछ फंक्शन सा दिखाई दे रहा है मंच पर कुछ महिलाएं डांस करते हुए नजर आ रही है।

खिड़की लगी हुई है और एक आगे पेड़ दिखाई दे रहा है एक आगे बाइक खड़ी हुई नज़र आ रही है।

एक समुंदर का दृश्य नजारा आ रहा है।

की थैली भी रखी हुई नजर आ रही है और साइड में एक फ्रिज दिखाई दे उसमें कुछ ठंडे की बोतल भी --